यह तस्वीर एक बहुत बड़ी मॉल की है इसमें सफेद रंग का पेंट करा गया--

रखी हुई है यहां का दरवाजा शीशे का--

और ये बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं।

ये तस्वीर एक बहोत सुंदर पारक की है इसमें बहोत सारी हरी भरी घास लगी हुई है।

यह पार्क बहोत ही बड़ा और सुंदर--

सड़क पर बहोत सारा अंधेरा भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर के अंदर एक बहुत बड़ा होटल दिखाई दे रहा--

यहां पर खाटू श्याम जी का--

यह तस्वीर एक बहुत बड़े एयरटेल के दुकान की है यह पर--

ये तस्वीर एक बेडरूम की है।

और यहां कुछ चद्दर भी और तकिए भी इस बेड पर रखे हुए हैं।

यहां एक खिड़की भी दिखाई दे रही है।

एक पुतला भी दिखाई दे रहा है जिसने लाल रंग की टी शर्ट पहन--

ये तस्वीर एक सड़क की है इस पर बोहोत सारी गाड़ियां जा रही है।

जहां पर काफी अंधेरा है और बहुत सारी लाइटें जल रही--

ये एक पारक में रखा हुआ हैं।

बहोत सारे बिजली के तार भी दिखाई दे रहे हैं और यहां बहोत स--